फंक्शन से लिया गया है। ऐसा लगता है कि ये क्रिसमस का फोटो है जिसमें --

यह किसी फंक्शन का फोटो लगता है जिसमें--

स्कूटी पर वाइट कलर का पेंट है।

लिखा है। यह लाल कलर के पोस्टर पर लिखा है।

पांच लोग कुर्सियों पर बैठे हैं।

इन पर ब्लर किया गया है।

जिस पर न्यू नाज हैंडी क्राफ्ट लिखा है।

साइड में और छत पर--

छत पर चार पंख लगे हैं और काउंटर भी रखें गए हैं।

और एक पीले कलर का बोर्ड लगा है जिस पर कुछ लिखा है।

वह अंदर की ओर जा रहा है।

यह किसी बियाह शादी का फोटो लगता है।

उनके ऊपर कुछ लड़ियों से सजाया गया है।

सिम वाले की दुकान का फोटो लगता है जिसपे--

एयरटेल फोर जी का बोर्ड लगा है।

काउंटर पे हाथ रखे दो--

काफी सारे काउंटर खाने का लगे हैं।

कुछ लोग जाते दिखाई दे रहे हैं काफी लाइटिंग का प्रोग्राम किया गया है।

उधर जाते दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी होटल का लगता है।

पांच प्लेट रखी है और दो--

एक कार ग्रीन कलर की और एक लाल कलर की है नीचे--

और इस घर पर सफेद कलर हो रखा है।